सामने सीढ़िया बनी हुई है इसके सामने ग्राउंड पड़ा हुआ है जिसमे पत्थर पड़े हुए है और पेड़ पौंधे भी लगे हुए है घास भी लगी--

फोटो में एक तालाब नज़र आ रहा है। इस के पास एक बाउंड्री बनी हुई है। जिस पे से कुछ लोग गुज़र रहे है। इसके पास एक ब्रिज बना हुआ है। जिस में दोनों साइड बाउंड्री बनी हुईं है। इसके सामने एक--

बिल्डिंग भी बनी हुई है। जिसका रंग लाल है। इसके पास हरे पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

फोटो मे एक बहोत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है इसके नीचे बना मंदिर नजर आ रहा है यहा पर एक लेडीज खड़ी हुई है जो की अपने हाथ मे कुछ रखे हुए है।

फोटो में एक बस खडी हुई है। जो कि नीले कलर कि खडी हुई है। इसके की सामने लिखा हुआ है। चन्दडका चन्दडका लिखा हुआ है। इसके साइड में बहोत सी बसें खड़ी हुई है। इसके पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है।

फोटो में एक बहोत बड़ा मंदिर नज़र आ रहा है। इसके सामने कुछ पत्थर पड़े हुए है। साइड में एक खुदाई का काम चल रहा है।

इसके उपर बाल्कनी बनी हुई है और मंदिर में एक चूटय्या बनी हुई है जिसके साइड में कुछ व्यक्ति खड़े हुए--

लड़कियाँ नज़र आ रही हैं इसके ऊपर बालकनी बनी हुई है उसमें भी कुछ लड़कियाँ खडी हुई हैं।